यहाँ बहुत सारे लोग आके इस बुक को ले जाते हैं हर क्लास का यहाँ बुक मिलता है और ये बहुत अच्छा लाइब्रेरी है यहाँ बहुत सारे लो--